जिनमें से कुछ सफेद कलर के कुछ लाल कलर के कुछ पीले कलर तथा कुछ हले कलर के भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

था वैन सफेद तथा ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है।

यहां चारों तरफ से बाउंड्री घेरी गई है जिसके अंदर दो पेट्रोल पंप बने हैं।

यह एक जंगल है जहां बहुत सारे पेड़ तथा पौधे लगे हुए हैं।

यह एक पहाड़ों के बीच से स्लोप्ड रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पे एक मशीन दिखाई दे रही है।

यह एक चिड़िया घर है चिड़िया घर के अंदर एक पिंजरा है जो कि काले कलर का दिख रहा है जिसके अंदर एक शेर बैठा हुआ है।

शेर के पीछे कुछ पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

फर्श का कलर भी लाल दिखाई दे रहा है तथा यहां पे एक स्टेज भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे चिप्स जैसे अनेक सामान टांगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस ढाबे की अंदर की फर्श पीली कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पे काफी हरियाली भी दिखाई दे रही है यहां गेट के सामने एक सड़क भी दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर कई सारे पुष्प से सजावट की गई है।

यह एक मछली बजार है यहां पे मछलियां को बेचा जा रहा है।

तथा एक आदमी खड़ा हुआ है तथा यहां पे एक काउंटर भी है। काउंटर के बगल एक काली कुर्सी और है।

जिस ले पीली पट्टी एक लाइनिंग भी बनी दिखाई दे रही है।

यह एक फ्लावर नर्सरी है यहां पे कई प्रकार के पुष्प दिखाई दे रहे हैं।

यह एक खेत है जहां पर एक मेड बंदी हुई दिखाई दे रही है।

की सड़क के दोनों बगल पानी भरा दिखाई दे रहा है।

यह एक कंपनी है यहाँ पर कई सारे से समान दिखाई दे रहे हैं जो कि यह गते में पैक है।

घर के बाहर एक चारपाई खड़ी हुई है तथा एक चारपाई रखी हुई है।

जो की एक लकड़ी के बने कपाट में रखे हुए हैं।

इसके बाहर कई सारी कारें खड़ी हुई है।